मस्जिद है प्यारा सा है लाइट जगमागा है लाइट लगाया गया है।

ये पहाड़ है बहुत सारे इंसान जा रहे है पेड़ है पौधे हैं और बहुत अच्छा दिख रहा है ये।